जहां पे बहोत टूल्स भी है जोकि जींस के लिए होते हैं।

अह कपल्स भी बैठे हुए हैं और की दो आंटिया खड़ी है और पंडित जी दिख रहे हैं और की सजावट भी बहुत ज्यादा की हुई है।

और बाजू में एक शॉप की दुकान की पिक्चर भी दिख रही है जो कि अभी क्लोज है।

और कि शायद ये दोपहर का टाइम लग रहा है।

कुछ घर है जिसकी सजावट बहोत अच्छी की गई है शायद क्रिसमस का टाइम है।

में आई हुई है जो की व्रत की वजह से आना होता है।

यहां पे हमे एक लोकल पिक्चर दिख रही है जहां पे बहोत ही सारी बेंच रखी हुई है जहां पे लोग बैठ सकते--

यहां पे हमें एक जू की पिक्चर दिख रही है जो कि एक--

हिरन की पिक्चर खींची हुई है और वह हिरन--

लाइट्स वगैरह भी दिख रही है और की--

यहां पे हमें एक शॉप दिख रहे हैं जिसका नाम है फूड ट्रक ।

यहां पे हमें एक लोकल पिक्चर गई है जो कि शायद लग रही एक स्टेशन की यहां पे ट्रेंस वगैरह आती है।

यहां पे हमें रेस्टोरेंट की पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि एक--

यहां पे हमें एक पेट्रोल पंप की पिक्चर दिखाई जा रही है।

यहां पे हम एक रूम की पिक्चर देख रहे हैं जो कि एक स्कूल की--

यह एक यू_पी_आई पेमेंट क्यू_आर कोड की पिक्चर है जो कि--